उसमें बहुत सारे सामान हैं जैसे गैस टंकी बोरा बहुत सारे --

जिसमे बस खड़ी हैं बहुत जादे ।

-- जिसका लेफ्ट वाले दरवाजा खुला है और एम्बुलेंस के पीछे कुछ महिला हैं।

एक स्कूल हैं जिस स्कूल का नाम हैं सनराइज पब्लिक स्कूल ।--

झूला दिख रहा है जो झूला के डब्बा हर एक कलर में दिखाई दे रहा है।

छे ठो और पोल -खम्बा हैं ।